ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है जिसके सामने की तरफ में--

इस तस्वीर में मुझे एक सफेद मकबरा दिखाई दे रहा है सामने की तरफ में एक फूल वाला पेड़ लगा हुआ है जिसमें पिंक फूल हैं।

ये एक फल की दुकान है।

जिसमें सामने की तरफ में बहुत सारे फल रखे हैं।

इस पे कुछ लिखा हुआ है एक आदमी खड़ा है ग्रे और नीली शर्ट में एक आदमी है ब्लू जींस --

एक वायर जा रहा है उस तरफ घर बना है जिसमें मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे पावरी नज़र आ रही है जो की ईंटों की बनी हुई है सामने की तरफ में घास लगी है।

यह एक गार्डन की तस्वीर है जिसमें मुझको--

ये एक मेले की तस्वीर है जिसमें सामने की तरफ एक दरवाजा बना हुआ है जिस पर प्रणाम लिखा हुआ है।

सामने की तरफ में ब्लैक पैंट पहने और चेक्स की शर्ट पहने एक आदमी है उस तरफ बुरखे में एक औरत है।

बहुत अलग-अलग तरह का सामान दिखाई दे रहा है पीला शटर दिखाई दे रहा है।

जिस पे सामान रखा है कांच के ऊपर।

इस तरफ में लाइटें दिखाई दे रही हैं कांच की खिड़की दिख रही है।

पिंक सूट में मुझे एक औरत नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक पोंड नजर आ रहा है जिसमें पानी है।

इस तरफ आकाश नजर आ रहा है।

पानी में घास लगी हुई है पानी वाली।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं मिट्टी डली है जिसमें कचरा ।

सामने की तरफ में बिस्किट बेचता हुआ एक आदमी चेयर पे बैठा है जिसने ब्लू जींस येलो शर्ट पहनी है।

सामने की तरफ कुछ आदमी हैं इस तरफ--

एक आदमी खड़ा है ब्लैक पैंट पहने और वाइट टी-शर्ट पहने अंदर एक आदमी है चेयर दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे ऑफिस नजर आ रहा है जिसमें--

गाय घास खाती हुई दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है।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

सामने की तरफ में मुझे घर दिखाई दे रा है लाल रंग का। उसमें बहोत सारे गमले टंगे है।

इस तस्वीर में मुझे एक ढाबा दिखाई दे रहा है जिसका नाम है गोकुल ढाबा।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

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग है जिस पे बैनर लगा है कैरियर पावर का।

सामने की तरफ दीवार पे एक वाइट बोर्ड है।